यह है परदा जो दरवाजे के पास लगता है खिडकियों पे लगता है कि जो बहार ईक तो पहला के रूम का सोभा बना रहा है। दूसरा जो बहार का धुल है वो कमरे में या घर में ना आ पाए इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है दरवाजो पे खिडकियों पे धुल और --